सूरज का कलर खाकी कलर दिखा रहा है यहां पर पूरा जो जो ढलता हुआ दिखाई--

जो एक दूसारे के साथ खेल कूद कर रहे है यहाँ पर आप देख सकते है रोड है ये कच्चा रोड है यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है इस रोड में और

जिसमे आपको ग्रोसरी जैसी एक स्टोर दिखाई गई हैं यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की बोटलस से रखी हैं ।

इस पिक्चर में एक फ्लावर दिखाई दे रहा है जिसकी पत्ती ग्रीन कलर मे है और इस फ्लावर का कलर का रेड और वाइट कलर मे है यह बहुत खूबसूरत लग रहा है।

एक आंटी रेलिंग के पास खड़ी हुई है और यहां पे मार्बल लगे हैं मार्बल के बीच में दूबा लग रही हैं ।

ये मेन रोड की पिक्चर की दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे है और यहाँ लोग एक कार एक ऑटो साइकिल बाइक भी रखी हुई हैं ।

दिख रहें इन बैट के ऊपर यहाँ पर कुछ स्टिकर वायस में कुछ लिखा भी है कुछ वर्डस में ब्लैक कलर में रेड कलर में पर्पल में येलो कलर में यहाँ पे इन बैटस पे कुछ लिखा है और इन बॉलो का कलर अलग-अलग कलर की बॉल--

पर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसी क्लास रूम का पिक्चर दी गई है इसमें एक ब्लैक बोर्ड लगा है बैनचेस रखी हुई हैं ।